यहां पे मेरे को एक मैदान दिख रहे है यहां पर बहुत सारे झूले लगे हैं और यह मैदान में कब मिट्टी और पत्थर पड़े हैं यहां से एक रास्ता गई है यहां बहुत सारे पेड़ लगे हैं यहां पर बाउंड्री भी खींची है और वहां पर घास भी और घर भी दिख रहें हैं।

यह भगवान की फोटो दिख रही है जो पिंक कलर की और गोल्डन कलर की है यहाँ पे हल्का ब्लू भी है और पिंक भी है और पीछे डार्क पिक भी है और यहाँ पीछे वाइट कलर का है और वहा पे ग्रिल लगी हैं।

यहाँ पे पेट्रोल पंप दिख रहा है जहाँ एक गाड़ी खड़ी और बहुत सारी मोटर साइकिल और एक और कार खड़ी है यहाँ पे बहुत सारे रेड लोग खड़े है।

वह से कुछ आ रहा है और यहाँ पे एक बिजली खम्बा भी है और एक छोटा खम्बा भी जहा गयी है यहाँ कैरियर में कुछ रखा है और बोरी पिली बोरी में भी कुछ रखा है और यहाँ पे भी वो अंकल कुछ चाट बेच रहे है।

स्टेज दिख रही है कई लोग बैठे भी है और कई लोग डांस भी कर रहे है हर तरह का लाइट् भी लगी है यहाँ ऑरेंज यहाँ पे कुछ बना भी है यहाँ पे कुछ लटका भी हैऔर शायद पेड़ भी दिख रहे है वह लाइट् भी लगी है वाइट कलर की--